इस फोटो मे एक पिंजरा नजर आ रहा है जिसमे बहुत से मिट्ठू नजर आ रहे हैं इनके नीचे एक तगाड़ी रखी हुई जिसमे कुछ दाने रखे हुए हैं।

इस फोटो मे एक कछुआ नजर आ रहा है जोकि काले कलर का है इसके आसपास छोटी-छोटी घास नजर आ रही है और यह एक कछुआ--

फोटो मे एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि अपने हाथ को ऐसे करे हुए है जैसे की उसका हाथ टूट गया हो उसके पीछे एक--

इस फोटो में एक बहुत बड़ी बॉल नजर आ रही है जिसपे एक लड़का अपने पैर को रखकर हाथों के बल पे खड़ा हुआ है इसके पीछे एक मशीन रखी हुई है।

इस फोटो मे एक पत्थर की गुफा नजर आ रही है जिसके नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।